एक अंकल बैठे हैं एक अंकल कार के जस्ट बगल में साइकिल के पास खड़े हैं।

उसकी साइड में दीवार के बगल में एक गमला रखा हुआ है।

टेबल के सामने एक कुर्सी है।

चॉकलेटी कलर की बतख बैठी हुई है नीचे खरगोश है।

जाल के पास में ईंट बीछी हुई हैं गोलाकार में इंटों में पीले गुलाबी नीले फूल हैं।

एक गड्ढ़ा हो रखा है। आदमी ने जैकेट पहनी है टोपा पहना है पैंट पहना है जूते पहने हैं।

इसपे एक बोर्ड लगा हुआ है क्लासेस --

के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

जिसपे लिखा हुआ है फ्लाइट अर्न हीरो ।

बड़ा डिब्बे रखे हुए हैं कार्टून रखे हुए हैं डिब्बा डिब्बी काजू बादाम बिस्किट ।

साइड में एक अंकल और आंटी डोल रहे हैं।

बर्फ की आइसक्रीम की पैकेट पड़ी हुई हैं।